दो तीन आदमी खड़े हुए है और उसमे लाइट्स जल रही है।

जिस दुकान में बच्चों के खाने के लिए कुरकुरे और सभी चीज मिलती हैं।

एक लड़का शीशे में फोटो खींच रहा है।